एक लाइब्रेरी है क्या कहता है अथी भी है बुद्ध भगवान का फोटो उटो भी टंगा हुआ है फूल-वूल भी है।

और एक आदमी है सो भीड़ का सेल्फी ली फोटो खिच रहे है सो नेट पे डालेंगे और एक दो --